मैदान के चारों तरफ बहोत सारे पेड़ है।

पीछे की तरफ एक पहाड़ नजर आ रहा है दोपहर का मौसम लग रहा है।

और ग्रीनरी देख रही है मौसम शाम का लग रहा है।

पीले कलर के डब्बे में कोई सामान रखा हुआ है।

पहाड़ों के बीच की जगह नजर आ रही है।

येलो कलर के परदे लगे हुए हैं येलो कलर का बैकग्राउंड है यहां पर सारा--

और यहां पर झंडे लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक कमरा दिखाया गया है जिसके अंदर एक टेबल लगा हुआ है।

होटल के अंदर पर्दे भी लगे हुए हैं और ग्रीन कलर का फर्नीचर भी दिख रहा है।

इसके अगल बगल में बहुत सारे टायर और पाने वगैरह पड़े हुए हैं जिससे शायद इसको सही किया जाएगा।

के पीछे बहुत सारे दो तीन स्कूटी भी खड़ी हुई है।

यहां पर एक तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे बादल आसमान में दिख रहे है।

आस पास बहुत सारी ग्रीनरी है और बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

बगल में एक गेट भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में एक मार्केट जैसा कुछ दिख रहा है जिसमें बहोत सारी साइकिलें भी दिख रही है।

बरसात का मौसम लग रहा लग रहा है और यहां पे ब्लू कलर का कारपेट बिछाया हुआ है।

यहां पर एक मकान का दृश्य नजर आ रहा है जिसके--

फर्नीचर के अंदर बहोत सारा सामान भी पड़ा हुआ है।

तीन लड़के बैठे हुए भी चारों तरफ बहुत सारी हरियाली नजर आ रही है।